ऑरेंज फूले हैं। बोहोत सारे फूले क माला रखा हुआ है बना हुआ है।

बहोत सारे का रेड कलर से नीचे बिछाया हुआ है कार्पेट बहोत सुन्दर बिछाया हुआ उसपे डिजाईन बहोत सुन्दर लाइट जल रहा है| गणपती बप्पा पर बहोत सुंदर --